यहां पर बहुत सारे टेबल और बहुत सारा कुर्सी लगा हुआ है।

और यहां पर आने जाने के लिए पतली पतली रास्ते बनाई गई है।

बहोत ही खूबसूरत है इसको बहोत सारे फूल से सजाकर बनाया गया है।

यह एक रेस्टोरेंट का दृश्य है।

घर में एक व्यक्ति खड़ा है और यहां पर आसपास में बहोत सारा पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहा है।

जिसके पीछे में ही एक बड़ा सा पहाड़ भी नजर आ रहा है।

यह एक मछली का बाजार का दृश्य है।

यहां पर बहोत सारा तेल और बहोत सारा साबुन का सामान दिखाई दे रहा है।

रोड के किनारे किनारे ऑटो भी लगा हुआ है।